यहाँ स्विमिंग पूल एवं बोट राइडिंग समेत अलग-अलग किस्म की --

वाटर एक्टिविटीज का मजा लिया जा सकता हैं।

यह लड़का एक प्लास्टिक की बोतल से पानी पी रहा है एवं इसने गहरे नीले रंग का --

ये चालू हुआ तो ये एक चौराहा है चौराहे में आस-पास बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है दो-तीन एक तरफ एक बड़ा सा पेड़ है पीछे खुला आसमान है होडिंग लगी हुई है होडिंग में लिखा है हम आ रहे है।